और सामने कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और मैदान के जस्ट बगल में एक पतला सा रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

और साइड में एक ब्लैक कलर का बड़ा-सा भी दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ-कुछ चाणक्या धर्मा चक्का लिखा गया।

और पीछे में तीन चार लोग दिखाई दे रहे है और ऊपर में लाइटे जल रही है जो की ऑरेंज कलर की हैं।

ब्लू कलर के चेक्स टी-शर्ट में हैं और उसके नीचे दो हाथ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक जिम की तस्वीरे दिखाई गई है जिसमें बहुत सारे डम्बल और प्लेट्स नजर आ रहे हैं और कुछ लोहे के रोड्स भी नजर आ रहे।

जिसमें बहोत सारे तार लगे गए हैं और एक तार दूसरे से इधर-उधर जा --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

स तस्वीर में खड़ा-सा मस्जिद नजर आ रही है जिसके ऊपर गुंबज पे एक व्हाइट कलर की टंकी भी दिखाई दे रही है।

बोनट पे एक कपड़ा भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे में ऑरेंज कलर की दीवारें भी दिखाई दे रही --

इस तस्वीर में एक डेरी की दुकाने दिखाई दे रही है जिसमे विशाखा डेरी पार्लर लिखा गया है।